जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा पहाड़ हैं इस पहाड़ के सामने कोई चट्टानें रखी हुई हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं और --

जैसा की आप देख सकते हैं यहांँ पर एक कमरे में बहोत सारी टेबल और बेंचें रखी हुई हैं और यहांँ पर बहोत प्यारे रैक बने हुए हैं इन रैकों में बहोत सारे --

जैसा के आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहोत बड़ा ग्राउंड बना हुआ है इस ग्राउंड में बहोत से बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखा रहे हैं यहाँ म-ग्राउंड के सामने मकान भी बने हुए हैं जो की वाइट कलर के हैं।

जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एक ब्रिज पर साइकिल रखी हुई है और इस ब्रिज पर बहौत प्यारी रेलिंग बनी हुई है जो कि येल्लो और ब्लैक कलर की है और यहां पर बहौत बड़े-बड़े पहाड़ बने हुए हैं इन --

जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एक कमरे में बहोत प्यारा वॉलपेपर लगा हुआ हैं इस वॉलपेपर के सामने बहोत प्यारी लाइट लगीं हुई है।